ऊपर की साइड दो दरवाजे और दो खिड़कियां हैं और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और सामने बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही हैं बिल्डिंग पर लाइटें लगी हुई हैं।

ऊपर की साइड छत में बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है।

यह एक सैलून है जहां पर एक आदमी बैठकर फोटो ले रहा है।

शोरूम की छत में बहुत सुंदर लाइटें लगी हुई हैं और शोरूम के अंदर सफेद रंग का पेंट किया गया है।

और साइड में एक पानी की बोतल रखी हुई है सामने काले और पीले कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

और नीचे रंग बिरंगी चटाइयां बिछी हुई हैं मशीनों पर काला और पीला पेंट किया हुआ है पीछे की साइड काले पर्दे लगाए हुए हैं।

और यहां ऊपर की छत में बहुत सुंदर लाइटे लगी हुई है।

ऊपर छत में एक पंख लगा हुआ है और कोने में एक कैमरा भी है और ऊपर कुछ जालियां भी लगी हुई हैं।

पेट्रोल पंप के सामने बहुत स बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और पीछे की साइड कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

और नीचे ब्लैक कलर का एक बड़ा लोहे का गेट भी लगा हुआ है और अस्पताल के पास और भी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

और सामने एक काउंटर है जिसके ऊपर दो पर्दी रखी हुए हैं और उसमें एक फुंवारा भी है और काउंटर के बराबर में एक पाइप निकल रहा है।

सामने दुकान का शीशे का गेट भी है।

और यहां पर बहुत सारे बच्चे और आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की साइड दो अध्यापक भी बैठे हुए और दो मैडम भी हैं।

क्लासरूम में पीले कलर का पेंट किया गया है ऊपर की साइड एक पंखा दिखाई दे रहा है।

नीचे की साइड पर भी फर्श डाला हुआ है और सामने की दीवार पर पीले कलर का पेंट किया गया है।

सामने की साइड कुछ घर और बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ एक और बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक पहाड़ी इलाका है यहां पर दो झरने नजर आ रहे हैं और साइड में एक बिल्डिंग भी है।

साइड में एक और छोटी सी बिल्डिंग है झरनों के पास बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

और उनके नीचे रंग बिरंगी चटाइयां बिछी हुई हैं।

यह एक बहुत सुंदर बगीचा है।